ऑन दार्जिलिंग हेरिटेज स्टीम रेलवे लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ पतियां है जो हरे रंग की है तथा पीछे कुछ पेड़ --

जैसा कि मैं देख पा रही मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही यहाँ पर बोर्ड लगा जो सफेद और लाल रंग का इसका नाम यूनियन बैंक यहाँ प कुछ वहां दिखाई दे रहे जो सफेद और --

काले रंग के पैंट पहन रखी है उसके हाथ में एक बैग है जो नीले और सफेद रंग का है बादल का रंग नीला और साफ है यहाँ पर पत्थर लगे हुए जो भूरे और स्लेटी रंग के हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे जो एक काले रंग की कार को साफ कर रहे हैं।

दिखाई दे रहे जिनका रंग पीला तथा यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ लगी है जिन्होंने रंग-बिरंगे कपड़े पहन रखे यहाँ पर एक --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है जो काँच नुवा बनाई गई है ये एक मस्जिद है जिसमें बहुत सारी काँच की जालियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर एक --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक ईमारत दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है इस पर एक बोर्ड लगा है जो पीले रंग का है यहाँ पर कुछ रैली जाती हुई दिखाई दे रही है जी --

जिसका रंग भी सफ़ेद है यहाँ पर सूरज डूब रहा है जिसकी रौशनी ईमारत पर पड़ रही है तथा कुछ पेड़ो पर भी पेड़ो का रंग हरा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है जिस पर बहुत सारे रंगों की लाइट लगी है ये रंग हरे गुलाबी नीले हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर कुछ डिजाइन दिखाई दे रही है इमारत में बनी हुई हैं ये पीले और लाल रंग की है जो गुबंद --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर कुछ बस दिखाई दे रही है बस का रंग पीला और काला है यहाँ पर किनारों पर हरे-हरे पेड़ लगे हुए हैं। कुछ ईमारत और टिन का --

जमीन का रंग भूरा और हरा है जिस पर डिजाइन बनी हुई है ये डिजाइन खानों में बनी हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक इमार दिखाई दे रही जो सफेद और लाल रंग की है यहाँ पर लाल रंग का एक बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा मैदान है मैदान हरा भरा है किनबी --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है।

पर मशीनें रखी हुई हैं यहाँ पर एक व्यक्ति जिसने आसमानी रंग की कमी तथा काले रंग के पैंट पहन रखे तथा --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर पुल दिखाई दे रहा पुल का रंग भूरा है नीचे तालाब तालाब में बहोत सारा पानी भरा हुआ ये हरे रंग का जमीन का रंग भी हरा तथा यहाँ पर --

कुछ तार लगे हुए हैं तार का रंग काला है बादल सफेद और साफ दिखाई दे रहे हैं पूल बड़ा है तथा जिस पर रेली लगी है रेली का रंग भूरा और पीला है।

ता लगेगें काले रंग के किनारे पर रेलिंग लगी है जिसका रंग सफेद है तथा अंदर कुछ सामान रखा है जो नीले और सलेटी रंग का है।

पेड़ों में कुछ फूल भी दिखाई दे रहे हैं फूलों का रंग गुलाबी है तथा किनारे पर हरे-हरे क्यारी बनी हुई हैं जो पेड़ हैं जमीन का रंग काला है।

एक लाईट लगी हुई है जो सफ़ेद रंग की है।